ये देखो ये ना आसपास पहाड़ वगैरह है।

और दूर दूर देख लो कितने सारे मतलब पहाड़ है।

ये सारे हैंड वॉश करने की चीजें हैं देखो कुछ ब्राउन है ब्लैक है व्हाइट है।

अब ये देख लो ये आदमी सीमेंट से कुछ कर रहा है।

ये आदमी बैठा है ए कुर्सीयों पे बैठा हुआ है।

ये हैं लकड़ियां आपने फर्नीचर की दुकान पे देखा ही होगा लकड़ियां होती है फर्नीचर की शॉप पर--

अब इसमें आपको मजदूर दिख रहे होंगे काम करते हुए और ये देखो नीचे तीन तरीके के इन्होंने जमीन में गाड़ रखा है।

अब देखो इतना बड़ा ग्राउंड है इतने बड़े ग्राउंड में ये इतने मतलब बैठे हैं घेरा बनाके और एक साइड में लास्ट में खड़ा है रेड शर्ट पहन टी शर्ट पहनकर।

एक तरफ से तो वो बंद है एक तरफ से खुला है।

एक ओर नीचे टेबल पे रखा हुआ है नीचे इसको--

ये हैं इंडियन रेलवे ये ट्रेन है।

मेरे को शिव की तस्वीर दिख रही है।

पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने--

देखो इसमें इतनी सारी चेयर दिख रही है।

ये हैं इंडो अमेरिकन स्कूल वहां देखो एक खाकी वर्दी में आदमी खड़ा है और कुर्सी रख रखी है उन्होंने--